फैन नज़र आ रहा है वाटर कैन नजर आ रहा है वही पर डस्टबिन नजर आ रहा है और स्वीच बोर्ड दिखाई दे रहा है और कुछ छोटे हरे रुख नजर आ रहे हैं।

जो येलो कलर के नजर आ रहे हैं और सीलिंग दिख रही है और जो दीवार दिख रही है उसमें काफी सारे फोटो रखे गए है।

बहुत बड़ा मॉल नज़र आ रहा है और उसके विंडोज़ कांच दिखाई दे रहे है और लाइटिंग सी नज़र आ रहे हैं।

वेजिटेबल नजर आ रहे है और यहाँं पर लाइट्स भी दिख रहा है काफी अच्छी तरह से रोशनी वहाँ पर नजर आ रही है लाइट्स की फ्रिज वहाँ पर नजर आ रहा है।

सामान भी बाहर रखा गया हैं और सीलिंग जो हैं वो वाइट कलर की नज़र आ रही हैं।

--जो काफी अच्छे दिख रहे है और काफी सोफ़ा वहाँ पर लगे हुए है जिनमे ब्लैक कलर और रेड कलर के है।

और यहाँ पर क-काफ़ी लोग भी नजर आ रहे हैं और वहाँ पर जो सीलिंग है वो व्हाइट कलर की है और लाइट से काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है।

'' और वहाँ पर जो वूमेंस है वो दिख रहे हैं जिनमें येल्लो कलर ग्रीन कलर रेड कलर पर्पल कलर दिख रहे हैं और वो कस्टमर्स वहाँ पर बाहर दिख रहे हैं। ''